दियें जलाकर सब लोग पूजा कर रहे हैं यह एक छठ पर्व है यहाँ पे सब लोग पूजा करने आए हुए हैं।

आस पास लाइटस लगी हुई है एक लड़की ने यहाँ पर बैठ कर पिक खिचाया है।

यह एक मंदिर है यहाँ पर भोले भगवान जी का शिवलिंग बना हुआ है पीछे--